यह फोटो एक चौपत्ति का है।

ये कुछ बाजार का फोटो है।

बहुत सारे खरीदारे और बेचेदार दिख रहे।

चाय के दुकान सब भी है।

बहुत सारी आदमी दिख रहे--

ए फोटो स्पोर्ट्स खेलते हुए लिया गया है।

टेबल पे कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर भी है और सी_पी_यू भी है।

खिड़की में परदे लगे हुए है।

बड़ा सा नारियल गछ भी दिख रहा है और सुपाड़ी गछ भी दिख रहा है।

दुकान का छत टीन का लगा हुआ है और उसके बेडे लकड़ी के लगा हुआ है।

एक बाल काटने का दुकान है।

कोई आदमी बाल कटा रहा है।

ये दुकान रास्ते के साइड में है।

इस कमरे में एक सादा सा वो दीवाल किया गया है।

और वॉल के कोने में मछरदानी टांगा गया है।

इस फोटो में दिया दागा गया है वही फोटो दिख रहा है।

दो हसबैंड वाइफ भी दिख रहे हैं।

फोटो एक रेस्टोरेंट का है।

इस रेस्टोरेंट में बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं और ए_सी भी लगे हुए हैं।

यह एक कैफे दुकान है।

दो आदमी ने चप्पल पहने हुए हैं।

बगल में दो साइकिल है।

और ये रस्ता कच्चा रास्ता है।

लाइट भी जल रही है।

दोनो साइड मे पंखे लगे हुए है।

बहोत चमकदार दिख रही हैं।

एक फूलों का दुकान है।

और फूल के दुकान के नीचे एक लाल मैट बिछाया हुआ है।

एक मॉल का फोटो है।

यह जगह कच्चा रास्ता है।

एक रस्ता का फोटो है।

बहुत सारी गाड़ियां दिख रही हैं रंग बिरंगी।

और एक टुकटुक भी दिख रहा है।

और स्कूटी भी दिख रहा है बगल में--

फोटो एक बस स्टैंड का है।

बस स्टैंड में इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक खुट्टा है।

शीन अभी रूका हुआ है।

उसी के साइड में एक चेयर भी रखा हुआ है।

आदमी खड़ा हुआ है दरवाजे पे।

बंगलो के बालकनी के बाहर कुछ चार रखे हुए हैं तो कुछ कपड़े सुखाए हुए--

जिस की एक पेन ड्राइव है।

सबके डब्बे अलग अलग कल रंग के हैं।

इसमें एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है।

दुकान बना हुआ है ये दुकान में गैस भी रिपेयर होते हैं और स्टोप सब भी रिपेयर होते हैं।

कुछ लोग बैठे हुए हैं।

लाइट भी जल रहा हैं।

पूरा फुल से सजाए हुए हैं।